यह किसी व्यस्ततम सड़क का फोटो है।

इसमें विभिन्न प्रकार के ऑटो है।

इसमें में आदमी किसी औरत को अपनी बाहों मे लिए हुए है।

जो की वेंटीलेटर अ और रक्त दाप का माप करने में काम आती है।

तथा इसमे बड़े-बड़े पत्थर चट्टानो के रुप में है।